यह एक भवन की दीवार है दीवार पर गुब्बारे सुसज्जित हो रहे हैं गुब्बारे लाल और सफेद रंग के हैं।

एक किनारे से मिट्टी खुदी हुई पड़ी है उसके पीछे एक भवन भी बना हुआ है कुछ लोग यहां पर कार्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

इसका गेट मेहराब के आकार का है भवन के ऊपर सुंदर नीला आसमान अलग दिखाई दे रहा है।

यह एक धार्मिक स्थल का चित्र है धार्मिक स्थल में एक मूर्ति साफ़ दिख रही है मूर्ति विशेष रूप से एक लाल और हलके पिले कपड़े को धारण किये हुए है।

यह एक ब्रिज है ब्रिज पर कुछ वाहन आते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्रिज बहुत साफ-सुथरा और आकर्षित नजर आ रहा है।

भवन के बाहर कुछ हरियाली नजर आ रही है और भवन के अंदर अंधेरा दिख रहा है।